कुर्सी में और उधर बहुत सारा सामान वामन रखा गया है वहा रेक में --

और एक इंसान है जो चश्मा -उश्मा पहन के फ़ोटो -ओटो बाहर का फोटो खिंचाया है।

यहाँ बड़ा सा चर्च का घर है जो गिरजाघर बोलते हैं बड़ा सा है अच्छा क्रोसे का निसान भी छत के ऊपर दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा भारी दिखाई दे रहा है।

इधर आदमी लोग भी खड़े हैं।